काले रंग की कार्पेट दिखाई दे रहा है एक लडका खडा दिखाई दे --

इस चित्र मे हमे दवाई की दुकान दिखाई दे रही है कलर हरा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे लोहे का दरवाजा दिख रहा है बिजली का खंभा दिख रहा है एक दीवार दिख रही है सड़क दिखाई ड़े रही है पेड़ दिखाई दे रहे है।

ये चित्र एक मेहेल का है जिसमें जिने दिखाई दे रहै है एक लडाकी दरवाजे पे खडी दिखाई दे रही है।

काला दरवाजा दिखाई दे रहा हैं सफ़ेद बोर्ड दिखाई दे रहा हैं ऊपर कांच दिखाई दे रहा हैं सफ़ेद बोर्ड पर कुछ नीला दिखा हुवा हैं।